यहाँ एक मछुआरा है जो की मछली बेच रहा है।

महगें दम पर बेचे जाते हैं।

ताकि इसकी सुंदरता बरकरार रहे --

यहाँ पर बहुत ही बड़ा -सा रूम है जिसके अंदर बहुत डेस्टिंग टेबल दो डेस्टिंग टेबल लगाए गए हैं।

यह इसमें गाने बजाए जाते है प्रोग्राम होते हैं।

यहाँ प रएक बहोत ही बड़ा सा झील है।

यह एक फिजिक्स अकैडमी है हैमंत शर्मा--

यह एक ऑफिस है जहाँ पर बहुत सारे लोग आते है।

यह किसी का फंक्शन होगा जिसके कारण इतने सजाये गए हैं।

यह मशीन खराब हो जाने के कारन--

और इसके कान भी बहुत बड़े-बड़े है और इसके शरीर में कुछ अलग किस्म के चित्रण किए गए हैं।

ये पंछी अलग अलग है सबसे --

एगो फूलों डीजे एगो डीजे आता हैं जो बहुत सारा साउंड इसमे साउन्ड दिया जाता है और सब कोई इसमें नाचते हैं।